तस्वीर में एक जिम दिखाई दे रहा है जिम में विभिन्न प्रकार के वर्क आउट उपकरण है।

ब्रिज पर सीढ़ियां है जिसमें जिससे लोग ऊपर जा सकते हैं।

दुकान के अंदर एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर एक छोटा सा टेबल भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के दोनों साइड केले के पत्ते लगे हुए हैं ।

उसने हर और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है जिसके छत पर निर्माण कार्य चल रहा है।

ऊपर तार हवा में झूल रहे हैं।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

हॉल के छत पर लाइट लगी हुई है।

हरे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं जमीन पर घास और शायद दूर में एक सड़क भी दिखाई दे रही है।

ऊपर में शोकेस पे शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह और भी अन्य ग्रह की मूर्ति रखे हुए हैं।

घर में एक बड़ा सा ग्रिल का गेट है जोकि खुला हुआ है और कुछ खिड़कियां है।

उसके पीछे टीना का बड़ा गोल कंटेनर रखा हुआ है।

ऊपर बांस और प्लास्टिक से सीलिंग बना है।

दूसरी दुकान के ऊपर लिखा हुआ है जनता हुड मेकर ।

ऊपर बेलगावी टू धारवाद लिखा हुआ है।

तस्वीर में खाली जमीन दिखाई दे रही है।

सफेद दीवाल पर एक टी_वी रखा हुआ है।

इमारत में कई दरवाजे और खिड़कियां हैं।